तस्वीर मे एक दुकान नजर आ रही है और कुछ लोग उस समान की तरफ देख रहे है।

इस तस्वीर मे एक कमरे मे एक आदमी और एक महिला खड़ी है जिनके सामने काला और बड़ा सा डब्बा रखा है और हरी मैट बीछी है।

इस तस्वीर मे रंग-बिरंगे फूलों का बाजार दिख रहा है।

दो लोग बैठे है और बाकी के लोग खड़े है और पंडित उनके सामग्री दे रहा है।

इस तस्वीर मे आसमान दिख रहा है कई सारे महिला और पुरुष एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे है और दाई तरफ एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आ रही है।

और कुछ रिक्शा और ठेले भी दिख रहे है।

बैठी है और एक लड़का पत्थर के ऊपर हात रखकर खड़ा है लड़की कुछ मांग रही है।

इस तस्वीर में नाई की दुकान दिख रही है एक अपनी दाढी बनवा रहा है और नाई उसकी--

इस तस्वीर मे आसमान दिख रहा है एक अजीबोगरीब इमारत दिख रही है और एक महिला गेंद पकड़कर खड़ी है एक आदमी पीछे की तरफ देख रहा है।